मे टीचर द्वारा दिया गया स्कूल विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क मे दिखाया गया है।

यह यह किस धर्म का धार्मिक स्थल लगता है इसमें बहुत सारे लोग आकर अपने धर्म से संबंधित धार्मिक धार्मिक चीज कर रहे है।

यह एक मकान है जिसमें पांच व्यक्ति जो है इस मकान में काम पर कार्यरत है।

यह एक बॉयस सर्विसेसस की कंपनी लगती है।

ये इने इने चर्च का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते है प्रेयर करते हुए नज़र आ रही है ।

काफी सौन्दर्य दृश्य है यह।

य यह कोई धार्मिक स्थल लगता है जिसमें काफी सारी महिलाओं जो है हाथ जोड़कर नमस-नमन कर रही है और पीछे साइड में बहोत सारे व्यक्ति खड़े है यह कोई धार्मिक स्थल ही होगा ये पूजा-पाठ का स्थल लगता है।

यह काफी अच्छा द्रश्य है पर्यटन स्थल लगता है व्यक्ति जो है यहाँ घुमने के लिए इत्यादि के लिए आए हुए है काफी अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य प्रतीत होता है लोग उसको देखकर आनंद ही आनंद ले रहे है। ऊपर में एक --